देखने से यहाँ पर बहुत बड़ा नदी नज़र आ रहा है।

आसमान नीला नज़र आ रहा है सूर्य ढलते हुए दिखाई दे रहे है सुंदर नजारा है।

छोटे -छोटे पौधे और मिटी नजर आ रही है आसमान सफ़ेद नीला दिखाई दे रहा है दूर -दूर से पेड़। --

चढ़ाये हुए दिखाई दे रहे है । बाहर बहुत सारे लोग नजर आ रहे है। बहुत ही सुंदर नजारा है। --

सामने देखने से ऐसा लग रहा है की कोई मंदिर है।।

बाहर बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है और दूर-दूर से पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है आसमान नीला और गुलाबी नज़र आ रहा है बहोत सुंदर लग रहा देखने--

बहोत सारे पेड़-पौधे नज़र आ रहे है बहोत सुंदर लग रहा है।

कोई चर्च नजर आ रहा है यहाँ पर बहुत ही अलग -बिलग --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है।

सामने देखने से एक बिल्डिंग दिख रहा है यहाँ पर बहुत बड़े -बड़े खंभे है।

ऐसा लग रहा है की यह कोई जिम सेंटर है यहाँ पर जिम बहोत सारे समान--